आस पास के सज्जा को भी बहोत सुन्दर रूप से सजाया गया है तथा फूलो की मायता अ सहयता से --

स्कूल के अंदर की प्रतियोगिता का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चे कलर्स के आधार पर नई-नई चीजों का आकलन कर रहे हैं तथा क्रिया वन कर रहे हैं तथा वहाँ पर खड़े हुए अध्यापक-अध्यापिकाएं--

ये एक सुंदर मॉडल किये हुए सुंदर रूप में दिखाई दे रही है तथा इसके पीछे एक और गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये गाड़ियों की सामूहिक चित्र है। --

वहाँ पर व्यक्ति गणों के लिए चेयरों की व्यवस्थ भी की गई है तथा टेबल भी लगाई गई है तथा वहाँ पर एक स्टेज का आवरण भी किया गया है।

यह एक चाय के टी स्टॉल के बाहर का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है। ये किसी सामूहिक कार्य के लिए बाहर के दरवाजे के आगमन का सामूहिक चित्र है जिसमें व्यक्तियों का आवक जावक की क्रिया लगी रहती है।

तथा व्यवस्थित प्रणाली के रूप में वहाँ पर व्यक्ति निम्न-निम्न सामानों का क्रय बिक्रय करकर अपने जीविका को उपार्जन कर रहे हैं।

के क्रिया के लिए जगह का स्थान दिया गया है तथा वहां पे आस पड़ोस में पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़े मॉल का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है। इसमें किराने तथा जनरल स्टोर से सम्बंधित सभी प्रकार के रखे हुए उत्पाद दिखाई दे रहे हैं।

रोजे से सम्बंधित सभी प्रकार के नियमो का पालन किया जा रहा है तथा यह मस्जिद के अंदर का सामूहिक चित्र है। जिसमे पादरी के द्वारा दिए गए उपदेशो के आधार पर --

यह एक पार्क का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े कनेर के पेड़ पौधे लगे हुए है तथा वहाँ पर एक बेंच की भी व्यवस्थ की गई है जिस पर व्यक्ति बैठ कर वहाँ के --

ए सरकारी विभाग के आसपास की जमीन होने की वजह से इसे बैरिकेड्‌स के द्वारा बोहोत सुन्दर रूप में सजाया गया है जो कि एक व्यवस्थित पंडाली का रूप --

अ ये भगवा रंग के आधार पर किये जाने वाली एक व्यवस्था है तथा किसी भी पूजा द्वारा आयोजन के रूप में किये गई एक संपुर्णिम व्यवस --

तथा ये महिलायें स्कूल में बच्चों के होने वाले कार्यक्रम से संबंधित उन्हें कई प्रकार की शिक्षा दे रही हैं तथा उन्हें --

सभी व्यवस्था का निर्माण कर रहे है एक कार्य पातिथि के आधार पर होने वाली संपुडिक व्यवस्था है जोकि स्टेशनरी के दुकान पर होती हुई दिखाई दे रही है जोकि --

यह एक जनरल किराना स्टोर का बहार का टेंट का समुचित का दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर लाइट की व्यस्था की गई है यह नए रे नया --

टेंट की मदद से ये साइड वाले आवरण को बी बोहोत सुंदर दिखाया गया है तथा वहाँ पर खाने के स्टॉल की व्यवस्था अलग की गई है तथा जहाँ पर मेज --